इस फोटो मे बहोत सारे भीड़ है सामने एक अंकल है टकले अंकल है जिसने वाइट कुर्ता पाजामा पहना हुआ है उनके साथ एक और टकले अंकल है जिसने टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई है।

खड़े हो कर इस व्यू को अपने फोन में केप्चर करने की कोशिश कर रहा कर रहा है इस इस मैदान में बहुत सारे दुकानें भी है।

ये एक फ्लावर हाउस का फोटो है जहां पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए है।